यह घूमने फिरने लायक बहुत अच्छी जगह है।

ये एक दुकान टाइप की है।

और यहाँ पर कित्ते बैलून लगे हुए हैं।

और आउटसाइड कित्ती हरियाली है एक टावर भी लगा हुआ है।

ये जगह भी बहोत खूबसूरत है और यहां पर कित्ती पब्लिक खड़ी हुई है आउटसाइड कित्ती अच्छी--

पार्किंग करने की भी बहुत--

ये कितनी अच्छी प्लेस है।

ये एक अच्छा हाउस है।

अच्छे हड़ि हरियाली पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

काम करते हैं।

और इसके डोर भी काच के--

और यहां पर पब्लिक बैठी हुई है ये हरियाली भी आउटसाइड --

जैसे कि मैं देख सकता हूँ।

कि ये कि।

एक होटल टाइप की जगह है।

और इसमें सब सामान है।

इंडियन ऑयल और इधर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली पेड़-पौधे हैं ये बहुत अच्छा नजारा है इधर गाड़ी का पेट्रोल भराता है।

हरा-भरा एरिया है। ये पेड़-पौधे लगे--

देख सकते हो कि यह एक--

इसकी इसके तरप चारो तरप --

घूमने फिरने की जगह भी अच्छी है।

ये एक स्विमिंग पूल टाइप का है।

येह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।

येह पैसे निकालने की जगह है।

आउटसाइड कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और आउटसाइड कित्ते हरियाली पेड़-पौधे--